यह एक खुली हुई छत्त की फोटो है।

यह सभी एक पार्क में है जो पार्क है उसके निचे बड़ी बड़ी जमीन पड़ी हुई है जिस पर हरी हरी--

लोहे की यह ग्रीस टाइप लगी हुई है ताकि वह से कुछ पार्किंग डिस पार्किंग ना हो कुछ आदमी बेठे हुए है।

यह क्या और यह सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी सटक निकली हुई है काफी सारे और रुई की चदर्स पड़ी हुई है।

जिसमे सामान को लोड किया जा रहा है जैसे कुछ इन्सान--

बाकि चारो तरफ से हरे हरे पेड़ पोधे लगे हुए है और पहाड़ है इसपे एक काफी बड़ा पहाड़ दिख भी रहा है एक पेड़--

रंग रखे डिब्बे रखे बच्चों के खेलने के लिए बहोत सारी चीजे रखी हुई है जैसे लकड़ी की अलमारी है और अलमारी के उपर काफी सारी चीजे रखी हुई है।

छोटी छोटी बॉक्स भी है टॉय भी है और यहाँ पर टेडी भी रखे हुए है।

यह एक कम्पयूटर सिस्टम एक्युमेंट की शॉप है जहाँ पर कम्पयूटर के सारे उत्चर्ण मिल सकते है आई थिंग कम्पयूटर के पास मिलते है जैसे की--

लिखा हुआ है यह सॉफ्ट के बगल में वाईट कलर गाड़ी खड़ी हुई है।

जो काउन्टर है काउन्टर के सामने एक डिब्बा रखा हुआ है डिब्बे में काफी सारी चीजे अलग अलग कलर की है।

सामने घर बना हुआ है एक्चुअली दो घर बने हुए है जिनका कलर वाईट लगता है।

कुछ कुर्सिया ग्रे कलर है निचे जो फर्स है वो ग्रीन कलर की है सामने एक लडकी जिम कर रही है।

चारो तरफ से दीवारे बंद है बट एक तरफ से लुकंच कि दिवार है जोकि कंच का दरवाजा खुला हुआ है।

यह एक गुरूद्वारे की फोटो है गुरुद्वारे के जस्ट सामने दो कार खड़ी हुई है जिनमे से एक स्कार प्यु गाड़ी है दूसरी वाईट कलर की है नाम भी याद नही है बहोत बड़ा पंखा नही खम्बा लगा हुआ है।

एक घर है जिमेकी खिडकियों में लोहे की झाली लगी है जो ब्लैक कलर की झाली है यहाँ पर काफी सारे झंडे टंगे हुए है।

जो झंडे है उनमें पीला कलर और रेड कलर यानी कि येलो एंड पीला मिक्स है।

आमने सामने बहोत सारे गमले रखे हुए है जिनका पोधे में कलर हरा हरा और ब्लू कलर की--

यहाँ पर एक लाईट खम्बा लगा हुआ है बहोत बड़ा और यह खम्बा टूट चूका है जो दुसरे खम्बे से टिका हुआ है।

और इसकी तरफ सामने से एक छोटा सा गेट लगा हुआ है जहाँ पर बेडट्रोल फुरफ लिखा हुआ है टिके--

अगल बगल में दो मुर्तिया है मूर्ति में एक डांस करती हुई मूर्ति रखी हुई है उपर जो डिजाइन है उसपे गोल्डन कलर की डिजाइन बनी हुई है।

टोटल चार लडकिया है यहाँ पर डांस कर रही है लडकियों ने डांस करते समय रेड कलर की ब्लू कलर साड़ी पहनी हुई है।

गले में गोल्डन कलर का हार पहन रखा है सर में वाईट कलर का रुमाल लगा रखा है।

सड़क से ज्यादा कोई निकल नही रहा है सड़क के किनारे डिब्बा रखा हुआ है दो लम्बे लम्बे पेड़ लगे हुए है।

रोड़ की फोटो है जिसमे रोड़ से काफी सारी फोटो खिची गई है सामने से यहाँ पर बिल्डिंग है बिल्डिंग में मतलब तीन चार थोर--

मिट्टी पड़ी हुई है और जो दुकाने है दुकानों में हर दुकान में एक बड़ा सा एक पोस्टर चिपका हुआ है।

इसपे कुछ कुछ लिखा हुआ है और कही इंसानों की--

यह एक रोड की फोटो है जो रोड़ किनारे से चारो तरफ से रोड़ निकली हुई है।

रोड के जस्ट सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है बहोत सारे लोग आ रहे है जा रहे है।

इसके रोड के किनारे एक बाईट एक ब्लू कलर की बाइक खड़ी है।

कुछ लड़के आ रहे है सामने से एक पेड़ लगा हुआ है वाईट कलर की कार खड़ी हुई है यहाँ पर बहोत सारी चीजे रखी हुई है दो इन्सान दीवार पर खड़े है।

बहोत सारे कलर लेकर द्रोइंग्स बना रहे है टीचर यहाँ पर टीचिंग नही कर पाई इस लिए पेहरा ले रहे है।

निचे पेंट पहन रखी है लड़के और लडकी ने येल्लो कलर की टी- शर्ट और गले में कुछ डाल रखा है कलर लेके कुछ कर रहा है।

मंदिर में छोटी छोटी स्तंभ लगी हुई है जैसे सामने एक ब्लू कलर का खम्बा है।

उसकी सीढियाँ जो है येल्लो कलर की है बाकी जो मिट्टी का कलर जो होता है वो वाला कलर है।

दातरो से उपर से दया करके पानी निचे आ रहा है जो यह छोटे छोटे पत्थर है यह पानी को रोकने की कोशिश कर रहे है।

यहाँ पर धुप उतनी ज्यादा नही है क्युकी खुला आसमान नही है बाकी पेड़ पोधे लगे हुए है।

इन पदों का कलर हरा कलर का है और इनमे से येल्लो कलर के फुल भी निकल रहे है।

इसमें काफी सारे रेल के टाइल्स लगे हुए है यहाँ पर असलम--

यहाँ पर कुत्ते का डिजाइन बना हुआ है सामने एक ऑइल की बोतल्स रखी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंड है जिसके फूट रेट लिखा हुआ है यहां पर काफी सारे इंसान है जो खाना खाके आ रहें--

और यहाँ पर एक रिक्शे से आदमी जा रहा है एक रिक्शा आ रहा है दूसरा रिक्शा भी आ रहा है।

यहाँ एक स्तम में फोटो है जहाँ पर शंकर जी का मंदिर है जो नन्दी महाराज बने हुए है उपर शंकर जी की कुंडली रखी हुई है।